एक बैनर लगा हुआ है जिसमें रेलवे हॉस्पिटल लिखा हुआ है।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

इसमें आजू बाजू बहुत सारे क्रीम सब लगे हुए है शीशे लगे हुए है।

यह एक सफाई का गैरेज है जो गाड़ी सफाई करता है।

एक आदमी देखिए प्रेशर मार रहा है जो गाड़ी साफ कर रहा है।

यह एक पेट्रोल पंप जैसा है इसमें बहुत सारे तार लगे हुए --

बिल्डिंग के ऊपर एक नेम प्लेट है जिस पर आई_टी_आई भिलाड लिखा हुआ है।

पीछे मार्बल है उसके मेन गेट पे ग्रिल है।

इसमें एक आदमी दिख रहा है जो कि पानी पी रहा है।

साइड में बहुत सारे किताब रखें हुए हैं।

और बहुत सारे स्टेशनरी सामान है।

और पहाड़ का डिजाइन है इसपे बहुत नीचे बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

ग्रिल से घेरा हुआ है एक आदमी है सेल्फी ले रहा है।

उसका नाम शासनिक स्नातककोर महाविद्यालय --

एक छत के ऊपर सोलर सोलर पैनल लगा हुआ है।